एक व्यक्ति खड़ा अपने शरीर में गमछी वोडे खड़ा है।

यह एक हलूमान मंदिर है जिसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ।

यह एक का फूल दुकान और मूर्ति दुकान का दृश्य है।

यह एक समारोह है जिसमें कई आदमी आए हुए हैं।

यह एक क्लब का नजारा है जहां पे बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही है।

इसके सामने एक एंबुलेंस और बहुत सारी बाइक खड़ी है।

सामने एक फूल खिला है जिसका रंग पिंक --

सामने एक बिल्डिंग है जो दो मंजिला है।

जिसमे टू ज़िरो लिखा गया है।

बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां भी हैंऔर यहां एक डी_जी भी रखा गया है।

यह एक दुकान का दृश्य हैजिसमें--

यहां बहुत सारे मूर्तियां और पुतले भी रखे गए हैं।

ऊपर जाने के लिए बांसों से एक सीढ़ी बनाई गई है।

इसे भैंनों से सजाया गया है जिसका रंग ब्लू और सफेद है।

इसका रंग अलग -अलग है सामने वाली गाड़ी का रंग व्हाइट है और उसका गेट खुला हुआ है।

बीच में एक औरत खड़ी है जो उसकी मैडम है।

यह एक गवर्मेंट बस है।

एक स्टेचू का दृश्य है जिसका रंग भूरा है।

ये जिसका नाम ए_के फिटनेस जिम है।

जिसका रंग ब्लू हैं खिलाड़ियों ने ब्लू रंग का टी_शर्ट और ब्लैक रंग का ट्राउजर पहना हुआ हैं।

यहां कुछ व्यक्ति आए हुए हैं दीवार में बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

और औरत ने हरे रंग का प्लास्टिक साइड में और एक व्यक्ति का आधा शरीर दिख रहा है।